उसके आजु-बाजु छोटे-छोटे गमले रखे हुए है हरे कलर के पौधे लगे है उनपे गमले पे लाल कलर का पेंट है वाइट कलर का पेंट है।

सामने एक बहोत बड़ा सा बंगलो हुआ है। इसका भी ग्रे कलर का बंगलो है। इसपे खिड़कियां बनी हुई हैं कांच की।

यहां मालगाड़ी जा रही है ट्रेन पटरी पे। अअ मेहरून कलर की मालगाड़ी का कलर है लोहे की मालगाड़ी पूरी है। ये उसके साइड में बिजली का एक खंभा लगा हुआ है लोहे का--

ये लड़कों की ड्रेस लगी हुई है। कु ट यहाँ पे डमी में लड़को कि ड्रेस है। शेरवानी है कुर्ता पजामा है जैकेट है कांच के अंदर ये ड्रेस रखी हुई है।

पानी का ग्लास रखा हुआ है जग रखा हुआ है चटनी रखी हुई है व्हाइट वाली ऑरेंज वाली चम्मच रखी हुई है।